यह एक दुकान का दृश्य है दुकान में छज्जे भी हैं।

यह एक बहोत ही बड़ा बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग के नीचे दुकाने खुली हुई है।

यह एक कमरे का दृश्य है कमरे की दीवार का कलर क्रीम और पिंक है।

और छोटे छोटे डब्बे भी रखे हुए हैं।

मछलियों का कलर सिल्वर और वाइट कलर का है।